जिसमें भगवान बुद्ध की तस्वीर दिख रही है।

सी एन जी लिखा हुआ है।

इस चित्र में कंस्ट्रक्शन का काम नजर--